इस बिल्डिंग के ऊपर मीनार बनाया हुआ है।

साथ ही इस बिल्डिंग के साइड साइड में छोटे छोटे प्लांट्स और बाउंड्री की हुई है।

इसके सीलिंग में लाइट्स लगी हुई है और वॉल पे फैन लगी हुई है।

अथी इसके एक गेट पे दो लोग खड़े हुए हैं।

और तीन गेट्स लगे हुए हैं।

इसके साइड साइड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जिसके सामने की तरफ दो रास्ते है।

और इसके चारों तरफ बहुत सारे घर और पेड़ है।

इस दुकान के साइड में बहोत सारे फ्लावर से डेकोरेट करके और लाइट्स लगाई हुई है।

इस फोटो में एक बहुत बड़ा खाली मैदान है।

और इसके सीलिंग में लाइट्स है।

जिसके ऊपर आग लगाए हुए है।

इस फोटो में एक टेबल है जिसके ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा बिछाया गया है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग है इस बिल्डिंग का नाम--

सखी वन स्टॉप सेंटर पलामू लिखा हुआ है।

इसके साइड ही में एक वीडियो ग्राफर भी है।

उसके चारों तरफ वाल में बहोत सारे लाइट्स लगे हुए है।

इसके वॉल का कलर व्हाइट और ब्लू कलर का है।

साथ ही इसमें बहुत सारे बीज को रेक पे सजा के रखा गया है।

कुछ बीस डब्बों पे और कुछ पैक करके रखे गए हैं।

इस फोटो में बहोत सारे बच्चे डांस प्रोग्राम कर रहे हैं।

साथ ही वो डांडिया के कौसटीउम पहने हुए हैं।

इसके चारों तरफ बहुत सारी पेड़ लगे हुए हैं।

जिनमें बहुत सारे चेयर रखे हुए है।

साथ ही उसके बगल में एक पुरुष है जिसने माइक पकड़ा हुआ है।

इसके साइड साइड में बहुत सारे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट है।

साथ ही इसके साइड साइड में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इसके वॉल का कलर व्हाइट और ब्लू है।

और बहोत बड़े बड़े गाड़ियां है।